इस फोटो मे सामने के तरह एक दूकान दिखाई दे रही है दूकान मे बाल्टी दिखाई दे रही है बाल्टी की कलर रंग-बिरंगी दिखाई दे रहा है ऊपर की तरफ एक बोर्ड दिखाई दे रहा है।

फोटो में खाली जगह दिखाई दे रही हैं बिल्डिंग के पीछे का फोटो लिया गया हैं इनमे बहुत सारि खिड़की दरवाजे दिखाई दे रहे पीछे की तरफ छोटासा गार्डन दिखाई दे रहा जिसमें पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

एक तरफ ग्रीन कलर की दिखाई दे रही है यहाँ पर खाली जगह पड़ी दिखाई दे रही है ऊपर की तरफ बिल्डिंग पर एक लड़का खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

कुछ न कुछ सामने की तरफ़ बहुत सारा कचरा दिखाई दे रहा है। डस्टबिन दिखाई दे रहा है।

एका-एक बोरी रखी हुइ दिखाई दे रही है। गाड़ी दिखाई दे रही है जिसकी कलर ब्लॅक कलर दिखाई दे रहा है आसपास कुछ लोग काम करते नजर आ--